ये तो कोई टूशन सेंटर का होगा बच्चे लोग पढ़ रहै है लेकिन देखो न --

देखो न विजय पुस्तक भंडार कर के लिखा हुआ है और पुस्तक भंडार बोल के चना वो-वो बेच रहै है कुरकुरे मुरकुरे हो गया--

अनार को खाओगे न तो न जो उसमे खून जो रहता है न खून अच्छा होता है और खून साफ़ भी करता है खून बढ़ाता भी है अनार--

पानी वानी गिरने वाला है लग रहा है वइसी लग रहा है देख के आजु-बाजू म भी पहाड़ है।

गोपालगंज का है ये गोपालगंज लिखा हुआ है निचे में गोपालगंज का सैलून है नया सलून हैं।

ये क्या बच्चे क्या कर रहे है डांस कर रहे है नृत्य कर रहे है बच्चे और इनको बारह - बारह भी लगा है उद्धघाटन होगा घर का --

यहाँ वो आंख वाख भी है न देखो न किडनी विदनी भी है छोटा छोटा बाजु में सैम्पल्स रखे हुए है।